दे रही है और दूर बड़े बड़े पर्वत दिख रहे हैं।

और ऊपर नीला साफ आसमान दिख रहा है सब बहोत ही सुंदर दिख रहा है।

और कुछ आदमी यहां खड़े हुए हैं।

और पास में कुछ व्हाइट कलर की चीज भी है।

दुकान सामान से भरी हुई है।

ब्लू कलर का बहोत बड़ा डब्बा दिख रहा है।